फैन है और यहाँ पर एक केबिन भी है अंदर और कुर्सियाँ हैं स्टिल की सी बनी हुई है और कोई नहीं है यहाँ पर सिर्फ एक आदमी है।